जो बाइक का रंग है वो ग्रे कलर का है ऊपर तार हैइलेक्ट्रिसिटी --

यहाँ पे ऊपर आसमान है और बहोत सारे तार गुजर रहे हैं। हरे-भरे पेड़-पौधे हैं।

बनी हुई है खिड़की के आगे और दरवाजे बने हुए हैं ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है। पीछे पेड़-पौधे हैं बहोत सारे।

यह एक किले की दिवार है जो कि जर्जर हालत में है। यह ईटो से बनी हुई है यहाँ पे ।

बहुत सारी हरी-हरी कलर की वनस्पतियां खेत में उगी हुई है।

यहाँ पे एक पुष्प भवन बना हुआ है एक बिल्डिंग बनी हुई है। जिसके बाहर एक पानी का तालाब बना हुआ है। पानी जो है वो हल्का ब्लैक कलर का नजर आ रहा है।

वहाँ पे छपा हुआ है। वहाँ पे दिवाले जो हैं वो ब्लैक कलर की और वूडन कलर की हैं और लाइटिंग हैं सफेद कलर की।

एक खंभा लगा हुआ है और यहाँ पे एक होर्डिग्स लगी हुई है।